लगता हे ये कोई किराना स्टोर है देखिए यहां पर फ्रिज भी रखा हुआ है और नीचे भी फेविकविक भी और डब्बे में कुछ रखा हुआ है कुछ पता नही चल रहा है तब तक खरीदेंगे तो ही तो पता चलेगा क्या है उसमे बिना खरीदे नही पता लगा सकते क्या रखा हुआ है उसमे क्या है और फोटोग्राफर नही है।

यह लग रहा है यहां पे ग्राउंड में दौड़ होने वाल आ गए किसी ट्रेनिंग के लिए अलग बच्चो को लाया होगा ग्राउंड में देख सकते हैं मैच चल रहा है किस चीज का फुटबॉल या क्रिकेट का मैच चल रहा हैं तभी कुछ बच्चे वहा पे खेल रहे हैं और यहां पर बहुत सारे बच्चे खड़े हैं। लगता है अगली --

इस तस्वीर को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाॅं पर कोई फंक्शन चल रहा होगा अच्छा से डेकोरेशन किया हुआ है।

यह लगवा रहे हैं सुन्दर लग रहा है एकदम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं और काफी सारे मूर्ति रखे हुए है यहाँ पे लगता है पूजा करते हुए इस धंधा को अपना स्टार्ट करने वाले है यहाँ पे कभी-कभी बुक खरीदना है तो इसी बुक स्टोर से ख़रीदए बोहत ही अच्छा देता है यहाँ।